और उसी पेट्रोल पंप के सामने एक वाइट कलर की बस भी नजर आ रही है।

चार फ्लोर्स नजर आ रहे हैंऔर एक बड़ा पेड़ भी दिख अहा है ।

ये एक हॉस्टल का सीन दिख रहा है।

इस हॉस्टल का नाम जवाहर हॉस्टल है।

यह ग्रीन कलर का कारपेट भी बिछा हुआ है।

इस पे गुंबद बने हुए हैं जिसकी बाउंड्री --

ये एक पिकनिक स्पॉट दिख रहा है।

जो कि बहुत बड़ी नर्सरी लग रही है।

यह सीन बहोत अच्छा लग रहा है।

अलग-अलग तरह की लाइट्स जल रही हैं।

ये एक लोकल हॉस्पिटल का सीन दिख रहा है।

घास भी ग्रीन ग्रीन है और बादल भी ब्लू है।

ये एस्टैब्लिश हुई थी टू थाउजेंड सिक्स में।

और यहां पर पीछे एक ब्लैक कलर का--

यहां पर अलग-अलग तरह के केक्स --

ये एक ब्राइडल कपड़ों की दुकान दिख रही है।

यहां पर ज्यादातर गाउंस पेस्टल कलर्स में है।

जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत सारी गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं।

ग्रीन रेड व्हाइट गोल्डन कलर की लाइट्स जली हुईं हैं।

यह एक बुक सेंटर का सीन दिख रहा हैं।

जिसका नाम आर_के_डी_एफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है।

जिसका नाम नेशनल हॉस्पिटल है।

जिसकी चेयर ब्लैक कलर की है।

जहां पर बहुत सारे कस्टमर्स खड़े हुए हैं।

और पिंक कलर का पर्दा डला हुआ है।

तरुण ट्रेडर्स की दुकान है।